यह एक मंदिर का ईलाका है ये ईलाका बहोत ही बड़ा तथा बहोत ही खुबसूरत है।

यहाँ पे साइड में ही ऑटो की सुविधाए भी उपलब्ध है जिससें लोग कहीं भी जाते है यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए भी जगह बनाए गए है।

यहाँ पे सभी-सभी प्रकार के अच्छी-अच्छी कंपनियों के कपड़े मिल जाते है।

बिलडिंग के बाहर में भी बहुत सारे अच्छे - अच्छे डब्बे में पोधो को लगाके रखा गया है जो कि दिखने में बहुत ही खुबसूरत दिख रहा है।

यहाँ पे लोग बहुत ही दूर -दूर से सब्जियाँ एवम मछलियाँ और भी इत्यादि वस्तुओं खरीदने के लिए आते रहते --